अजू तिरंगा दिसत आहे ब्लू कलर चे पडदे लावले आहैत जी व्हाइट कलर च्या पडद्याला दिसत आहे अजून चार्ट आहे स्कूल चा--

यहाँ पर कुछ लोग दिखाई दे रहे है कुछ दवाईया दिखाई दे रही है यहाँ पर व्हाइट कलर की दवाईया दिखाई दे रही व्हाइट कलर का एक टेबल दिखाई दे र--

यहाँ पर एक गार्डन दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर के प्लांट दिखाई दे रहे है व्हाइट कलर का एक बड़ा लाइट दिखाई दे रहा है एक लेडीज दिखाई दे रहे है।

कलर्स वाले बलून दिखाई दे रहे है एंड एक स्टार दिखाई दे रहा है एंड ब्लू कलर --

के पड़दे लगे हुए दिखाई दे रहे है अँड यहाँ कई लोग दिखाई दे रहे है।

अँड व्हाइट कलर के पर्वत दिखाई दे रही है ऑरेंज कलर के पर्दे दिखाई दे रहे है यहाँ पर एक पंडित दिखाई दे रहा है।